भाई आप लोग देख रहे हैकी यहाँ पे किस चीज का दूकान है आप लोग जान भी रहे होंगे क्यूकी इसके बिना दुनिया में कोई अच्छा इंसान बन नहीं सकता।

हेलो भाइयों यहाँ पे देख रहे है के कितना अच्छा काफी संख्या में भीड़ लगा है यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पे मछली का भी--

यहाँ पे अम्म जो मेरे ख़याल से जो भाई बैठा है ओ अपना सहे दिल से पेहरा का काम कर रहा है और काफी शानदार लग रहा है यहाँ का नज़ार--

के छोटे से बच्चे के पीछे एक अअअ दादा जी है जो की वो बहुत ही वहाँ का काम कर रहे है और फैक्ट्री में बहुत ही अच्छा काम होता है फैक्ट्री का जो समान होता है बहुत ही अच्छा ठोस मजबूत होता--

और एक कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं उनके पीछे एक बड़ा सा माहोल बना है।

थीन एक दिन के इंसान है और नदी को पार करते है करवाते है वहाँ पर दिख रहे है की पहाड़ी का जो नजारा है कितना स अच्छा लग रहा है बहुत ही आ दिल का उ अच्छे लग रहे हैं।